यहां पर कार की पार्किंग है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

बड़े बड़े चट्टानों से एक बहुत ही बड़ा द्वार बना हुआ हैं।

तथा एक लाल कलर की टोपी सर पर रखी गई है।

लोहे और पत्थर के पिलर बनाकर बाउंड्री लगाकर चारों तरफ से घेर रखा है।

यहां पर एक टैंक आया हुआ है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बैंक के बाहर ज़ीरॉक्स कॉपी की दूकान हैं।

समंदर की पानी में सीधा सूरज की किरणें पड़ रही हैं।

यहाँ पर कई तरहके के वरमालाएँ बनायि जाती हैं।

यहाँ पर बहुत ही सुन्दर एक झील और बहुत ही सुन्दर एक झरना हैं।

डोसा केले के पत्ते पर परोसा गया है।

सी प्लस प्लस लैंग्वेज सिखाया जाता है।

और दूसरे छोर पे बहुत सारे नाव और लकड़ी का एक घर बना हुआ है।

मंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यह प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर दृश्य है।

पेड़ पौधों के बीचो बीच चीरती हुई नदी --

मदरसे में ऐ.सी. और एक घड़ी भी है।

बस सफेद और नीले कलर का है।

चंद्रमा का प्रकाश पेड़ों की चमक को बढ़ा रहा है।

इमारतो के बाहर सड़के बहुत ही सीधी खाली लंबी और सुनसान है।

सड़कों पर दो पहिए वाहन है।

यह गुफा काफी अंधकारमय और काफी भयानक है।

चर्च सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है।